जैसे कि आप देख पा रहै हैं मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय जोन दिखाई दे रहा है।

एक जैसा की आप देख पा रहे है यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

चादर रखी हुई है और --

मां दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई दिखाई दे रही है और उसमें कुछ गणेश जी की प्रतिमा भी रखी हुई है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर में एक फैन लगा हुआ है और--